ये क्रिसमस का फेस्टिवल है आस पास में बहुत सारे ये क्रिस्चन लोग खड़े हुए है।

और बीच में रेड कलर के वस्त्र में सेंटा खड़ा है।